सा ये हॉल बना हुआ है। जिसमें ऊपर लाईटे लगी हुई हैं और रेलिंग की गयी है।

और इसकी अगल बगल भी कुछ मैदाने भी बनी हुई है। जिस --

और अगल-बगल रैलिंग की गई है और बाहर बहोत सारे गाड़ियांस्कूटी खड़ी हुई हैं। अगल-बगल भी हरे-भरे पेड़-पौधे है। बादल नीला है।

उसके बगल में टेबल लगी हुई जिस पर बैठे हुए हैं अगल-बगल गाड़ियां साइकिल रखी हुई है मैदान है जिस पर हरी घास जमी हुई है और अगल-बगल पेड़-पौधे है बादल सफेद है।

उसके बगल में एक गार्डन बना हुआ है। सामने एक डस्टबिन रखी हुई है। ये जिसमें हरे पेड़-पौधे भी हैं। अगल-बगल भी हरे भरे पेड़-पौधे भी हैं। बादल सफेद-काले हैं।